वहां एक आदमी खड़ा दिख रहा है जिसने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी है।

हाथों में चूड़ियां पहने अच्छी अच्छी साड़ियों में तैयार होकर यह औरतें यहां बैठकर पूजा कर रही है।

पानी में खड़ा दिख रहा है।